कुछ लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं एवं बाहर भी काफी सारे लोग घुमाई करते हुए नजर आ रहे है।

कोई मोटरसाइकिलों की दुकान है।

और इस बिल्डिंग के आगे कुछ मोटरसाइकिले खड़ी नजर आ रही है।

सामने प्रतीत हो रहा है कि यहां पर एक बहोत बड़ा पारक है।

और यहां पर पास में दो कमरों पर स्टाफ नाम लिखा हुआ नजर आ रहा है।

सामने की ओर दिख रहा है कि यह कोई मोटरसाइकिलों की दुकान है।

यह कोई एक सरकारी डिपार्टमेंट का ऑफिस है और इस ऑफिस के गेट के आगे --

और इस रेस्टोरेंट में अलग अलग प्रकार की काफी सारी लाइटें डेकोरेशन की हुई है।